लीची है जिसका कलर रेड है इसमे बहुत सारे पत्ते है और ये चार बड़े-बड़े बांधे हुए है और ये चार एक प्लेट मे रखे हुए है और वहां पे बहुत सारे पानी है।

यहाँ पे एक पानी टंकी है जो बहुत बड़ा-सा है वहां पर नारियल का पेड़ है उस साइड घर है जिसका कलर व्हाइट --

ये बहुत बड़ा-सा ऑफिस है ये ऑफिस के दीवार का कलर व्हाइट और इसमे बहुत सारी लाइट्स लगे हुए सारी खिड़कियां यहां पे एक बहुत सारे चेयर लगे है जिसका कलर ब्लैक है।

ये एक बहुत बड़ी सी नदी है बहुत बड़ी सी नदी है इसका पानी ग्रीन है चारो तरफ बड़े-बड़े पेड़ है और वहां पे पहाड़ है।